ये फोतो मे जो हमको एक साइबर जैसा दिख रहा है।

फिर उसका सामने में जो गीता रके है चेयर सब भी है।

यह हमें जो बहुत ज्यादा लोहा का इस्तेमाल करके है।

जोकि नाच रहे हैं उसके बाद यहां में दो लड़की उसके बाद पीछे में लड़का लोग हैं।

ये फोटो में हमको जो एक फंक्शन जैसा दिखाई दे रहा है जहां में पिंक और वाइट कलर का बैलून मिक्स करके बहुत ज्यादा लगा के है।

और टेबल के उधर में बर्थडे केक है।

उसका आस पास में बहुत ज्यादा पत्थर है फिर अंदर में भी है।

ये फोटो में हमको एक सुंदर सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

ये फोतो में हमको बहुत बरा नदी दिखाई दे रहा है। जहां में बहुत बरा बरा पत्थर है।

उसके बाद भगवान का पोस्टर में हार चाडा के भी है।

ये हमें जो अलग अलग किस्म का मछली है जिसकी लंबा है गोल है थोड़ा सा।

ये जो एक बरा सा बिल्डिंग है।

और उसका पीछे में बहुत लंबा सा एक ब्रिज हैं जो की लोहा से बना के है।

स्विमिंग पूल के पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ है इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखाई दे रहा है।

यै टेबल का साइड साइड में चेयर को रखे हैं।

ऊपर में फैन ऑन कर के है लाइट्स भी ऑन कर के है।

ये फोटो में हमको एक कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है जहां में नंबर दिए मोबाइल नंबर --

ऊपर में लाइट्स ऑन करके है।

पीछे में ईंटा दिखाई दे रहा है और टीना भी दिखाई दे रहा है और पौडा भी डिखाई डे रहा है।

पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ उसके बाद जंगल दिख रहा है फिर सामने में एक ठो गुमती है।

फिर यहा मे जो लाइट्स को जो ऑन करके है।

फिर अंदर में बहुत ज्यादा कपरा है जिसको प्लास्टिक का अंदर में घुसा के रखा गया है अच्छा से।

ये फोटो में हमको तीन बुद्धा का स्टेचू दिखाई दे रहा है जो की गोल्डन कलर का है।

वायर दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है सामने में।